और इसमें शीशे के ग्लास लगी है।

बुक्स दिखाई दे रही है बुक्स की फ्रेम ब्राउन है।

एक टी_वी हमे इसमें दिखाई दे रहा है और --

ग्रीन कलर की कुछ शीशियां दिखाई दे रही हैं जैसे शैंपू आदि जैसे क कुछ यूजिंग का सामान --

इस फोटो में हमें एक छाता दिखाई दे रहा है और सामने ही शॉप दिखाई दे रही है।

एक घर दिख रहा है घर के सामने है का--

हमें यहां पर एक बिल्डिंग दिख रही है जिसका छत का कलर रेड है और साथ में ही एक पत्र बॉक्स हमें दिख रहा है।

और हमें यह बाकी ब्लैक कलर का दिख रहा है कुछ लाइटें भी दिख रही है।

येसा दिखाई दे रहा है साथ मे कुछ पेड़--